लेडिस ने साड़ियां पहनी हुई हैं शॉल ओढ़े हुए हैं।

सामने कुर्सियों में बहोत सारे बच्चे बैठे हुए सर की बात सुन रहे है।

और कुछ हैंगर पर कपड़े टंके हुए पड़े है।

जहां पर सामने अलमारी बनी हुई है।

कुछ फूलों के पौधे भी दिख रहे हैं।

फर्श भी दिख रहा है ब्राउन कलर की हल्की हल्की टाईल्स भी दिख रही हैं।

वो टेबल्स लगी हैं चेयर्स लगी हुईं हैं।

ये एक सामने बिल्डिंग जैसी दिख रही है।

जहां एक टेबल लगी है ब्राउन कलर की--

पूजा का सामान जैसे की थाली में धूप जग रही हैं।

साइड में एक दुकान है जिस पर खाने पीने के पैकेट्स टंगे हुए हैं।